जिस पर एक व्यक्ति काम कर रहा है उसके सामने बच्चा बैठा हुआ है

नक् खासी पत्थर को खाट कर करी हुई है।

यह एक मेंस वेयर की दुकान हैं जिसमें कई सारी पेंट रखी हुई नजर आ रही हैं यहां साइड में लोवर टंगे हुए हैं।